यहाँ पे आप देखते सकते है यहाँ पे शो यहाँ पे ये शॉप्स लगी हुई जो जो कि खाने कि शॉप्स है यहाँ पे देख सकते है ये --

काफी अच्छा एगो काफी भीड़ है और ये इंसान यहाँ पे आये है| जो कि यहाँ मंदिर मे भगवान जी की दर्शन करने के लिए मंदिर मे | और ये जो मंदिर है जो की ये पूर्णियां की मंदिर है काफ़ी भीड़ लगी हुई है।

और इसकी ऊंचाई काफी अच्छी इसमे जो ब्राउन है व्हाइट कलर आप देख सकते है बोहोत ही अच्छी--

ये देखो ये जो पार्क दिख रहा है जो की ये पार्क मे काफी सारे फ्लावर्स लगी हुई है और ये देखो बोहोत ही अच्छा नजारा है यहां पे देखो जो ए ए फुब्बारा चल रहा है वो बोहोत ही अच्छा दिख रहा है।